दीवाल जो व्हाइट कलर से पेंटिंग किया हुआ है ऊपर साइड में येलो कलर से किया हुआ है।

इसमें वाइट कलर का टाइल्स लगा हुआ है।

और आदमी दिखाई दे रहा है सामने में रेड कलर का एक ठो चावल क्लीन करने वाला मशीन दिखाई दे रहा है और एक ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है।

ये एक रूम दिखाई दे रहा है।

और एक ठो पोस भी है।

लोग बहोत साइन बोर्ड बहोत चिपका चिपकाके रखा हुआ है।

उसको पूरा वाइट कलर से पेंटिंग किया हुआ है इसमें बहुत ज्यादा सोफा दिखाई दे रहा है और टेबल भी दिखाई दे रहा है।

ये एक रस्ता है इसमें साइड में एक ठो ब्लू कलर का कपड़ा पहन के एक ठो आदमी दिखाई--

ये एक जगह है इसमें सफेद कलर का--

और यलो कलर का लाइट भी लगा हुआ है।